तथा बीच में एक लॉन सा दिख रहा है जिसमें छोटी छोटी घास उगी हुई है तथा कुछ लोग बैठे हुए हैं तथा--